आ एक लग्जरी कार है ब्लैक कलर की यू.पी. नम्बर की कार है।

छतरी है सूर्य उग रहे है नीचे नदी भाग रही है नदी के ऊपर नाव है बढ़िया तरीका नो सफर करियो आप को।

यह एक येलो कलर के शूटर पहरिया एक लड़कों चढ़रियो है कने एक होटल है इके रोडवेज के।

आ तंदूरी चाय की दुकान है स्पेशलिस्ट तंदूरी चाय की स्पेशलिस्ट इसमें चायबिस्कुट माटी का कप में चाय पानी की बोतल --